छोटे से चेयर के अ कुर्सी के पास बैठा हुआ है।

इस इमेज में हमें ब्लैक और ऑरेंज कलर का एक--

सीमेंटेड है ये दुशरी खड़ी है।

यह एक बजार का इमेज दिखाई दे रहा--

और दो चार पेड़ हरे कलर का बड़ा-बड़ा दिखाई दे रहा है।

और ये बीच में एक छोटी सी लड़की साड़ी पेहनी हुई है गजरा लगाई हुई है बाल मे और एक औरत बैठी हुई है।

हाथी के ऊपर एक आदमी डंडा लेकर खड़ा हैं ।

एक गाड़ी दिख रही है पेड़-पौधे रोड का यह इमेज नज़र आ रहा है।

इस इमेज मे हमे लोहे का छड़ दिखाई दे रहा है।

और मैरून कलर का तीन चार कुर्सीयाँ दिखाई दे रहा है जो की जमीन पर रखा हुआ है यह कुर्सी--

चट्टाने बादल ये सभी चीजे नजर आ रही है।